इस चित्र में हमे एक चिड़ियाघर का नजारा दिखाई दे रहा है।

फोम वॉशिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है पास में एक मोटरसाइकिल नजर आ रही है।

एक पक्षी लकड़ियों पर बैठा हुआ है। आसपास पिंजरा है। अन्य पक्षी नीचे हैं।

बहोत भीड़ है यहां पर दो टेंट लगे हुए हैं।

हाथी का पुतला नजर आ रहा है।

हमें हरे भरे वृक्ष भी नजर आ रहे है।

शॉप के अंदर बहुत सारा सामान रखा है आसपास घर नजर आ रहे हैं।

आसपास हमें कई अन्य दुकानें तथा घर नजर आ रहे हे ।

सड़क पर हमें व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दे रहा है मोटरसाइकिल नजर आ रही है।

इस चित्र में हमें एक चर्च का दृश्य दिखाया गया है।

इस चर्च में हमें एक महिला एंकरिंग करते हुए दिखाई दे रही है महिला ने साड़ी पहेन रखी है।

के आसपास हमें हरे भरे बड़े बड़े वृक्ष नजर आ रहे हैं।

यहां पर हमें कई वाहन नजर आ रहे हैं जैसे कि ट्रक --

यहां पर हमे दो बच्चे फिसलपट्टी पर फिसलते हुए नज़र आ रहे है।

आस पास हरे भरे वृक्ष तथा पौधे नजर आ रहे हैं दृश्य बहोत ही सुंदर--